तलाव में बहोत सारा पानी भरा हुआ है।

आसपास कई सारे--

यहाँ पर दीवारों पर --

यह एक रोड की--

ये एक बड़े से--

ये एक बड़ीसी मंदिर की पिक्चर हैं।